रखे हुए हैं देखने में काफी अच्छा लग रहा है।

ऑफिस में ए_सी वगैरा भी लगे हुए हैं और टाइल वगैरा भी लगे हुए हैं।

आसपास काफी ज्यादा पेड़ पौधे वगैरह बने हुए दिखाई दे रहे हैं और--

जो इक्वलिटी अच्छी दिखाई दे रही है और इसके सजावट भी काफी बेहतरीन दिखाई दे रही है।

नजर आ रही है जिसमें एक व्यक्ति अह नजर आ रहा है ग्रे कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट --